ये फोटो देखकर मुझे दुकान जैसा लग रहा है।

बहोत सारा शीशा लगा हुआ है अ पीछे एक--

कुछ लोगों ने अपने हाथ में ढोल लिया हुआ है और ढोल बजा रहे हैं और--

व्हाइट और ब्लू कलर का चेक शर्ट पहना हुआ है और मिर्ची के बगल में एक ब्लू कलर का कैरेट भी रखा हुआ है।

इस फोटो में एक नदी दिख रहा है बहुत बड़ा नदी दिख रहा है।

ये फोटो देखने में किसी समुंद्र--

बिल्डिंग के बाहर बहुत सारे मोटरसाइकिल भी खड़े हैं।

इस फोटो में दो बहोत बड़े बड़े टंकी दिख रहे हैं टंकी के ऊपर सीढ़ी लगा हुआ है।

उसके ऊपर अह कारपेट के ऊपर व्हाइट कलर की कुर्सियां रखी हुई हैं।

और उसमें ऊपर के साइड में बहोत सारे बिस्किट्स है।

और घर पर वाइट कलर का रेलिंग भी है और आस-पास में भी घर है गाछ --

उजले रंग का घर है तीन मंजिला घर में बहुत सारा खिड़की भी है।